यह कहीं जगह का --

यह कोई बहोत पुराना--

--महल है जैसे है जहाँ पे--

घर भी बना है किनारे में जहाँ से लोग बैठकर देखते है।

ये एक स्कुल या कॉलेज के स्टूडेंट है ये एनएसएस --